देख रहे हैं ले रहे हैं खरीद रहे हैं और बोहोत अच्छे से सब कुछ जमाया --

दोनों साईड से डाल ली है बीच बीच का स्पेस छोड़ दिया है तो लोग खड़े हो कर फोटो खिचवा रहे हैं यहां पर पेड़ भी लगे हुए है और बारीस का मौसम बना हुआ है।

यहां औरतें छठ पूजा कर रही हैं गन्नों से पूजा कर रही हैं घूंघट में बैठी हुई हैं |